पास में एक खंभा लगा है।

यह एक जिम खाने की तसवीर है जिसमे कुछ लोग --

जिसपे उसका नाम साश शहीद --

बापू राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय --

तस्वीर ली गई है जो एक --

जस्ट चिल कैफे एंड स्टोर लिखा हुआ है।

इसमें आदमी का सुडौल शरीर दिखाया गया है।

सामने ढेर सारी धूल है।

जिसके बीच में ढेर सारी मेज और एक कुर्सी दिखाई पड़ रही है।

ऊपर दीवार पर एक काले रंग का पंखा टंगा हुआ है और नीचे मेज पर एक जग रखी हुई है।

रास्ते को बीच में जोड़ता है।

इसमे ढेर सारी गाड़ी लाइन पे लगी हुई है सामने तीन सोफ़े लगे हुए है ।